बेडरूम लग रहा है जिसके अंदर एक--

ग्रामवासी बैठे हैं एक ग्राम वासी बच्चों को संबोधित कर रहे हैं आगे बस है बहोत सारे बच्चे आगे बैठे--

दो नए ऑटो खड़े हैं और आगे फुव्वारे वगैरा लगे हुए हैं।